बुक रखी हुई दिखाई दे रही है | काउंटर पर रखी हुई दिखाई दे रही है |कुछ कार्टून रखे हुए दिखाई दे रहे हैं | बंधा हुआ कार्टून दिखाई दे रहा है | अलमारी में वॉश गिफ्ट सिनेरी रखे हुए दिखाई दे रही है | लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

तीजा निकलते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ छोटी- छोटी बच्चियाँ दिखाई दे दिख रही हैं जो की हाथ पर कैंडल ली हुई हैं और यहाँ--

फैक्टरी दिखाई दे रही हैं तेल मील की फैक्टरी दिख रही हैं बहुत सारे टीन पर भरे हुए तेल दिखाई दे रहे हैं पैकेजिंग दिखाई दे रहे हैं।

दो लोग दिखाई दे रहे है और ये खड़े दिखाई दे रहे है और यहाँ मुझे कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हेऔर यहाँ किसी की मेरीज हो रही है और यहाँ दोनों खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे बहुत सारी लेडीज दिखाई दे रही है और सभी ने ए एक जैसी साड़ी पेहेन रखी है और एक एक ने वाइट कलर की पेहेन रखी है और सीढ़ियों के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

और यहाँ चेयर और चेयर और काउन्टर नजर आ रहा है चारों तरफ समान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी दुकाने नजर आरही हे यहा लोग क्रेडिट करते हें सभी केनडीडेट आते हैं।

और उम्म और कपड़े बदरे हुए दिखाई दे रहे हैं।